इसके अंदर जैसा लग रहा है कोई हॉल हो। बोहोत अच्छा लग रहा है सुंदर लग रहा है और --

सामने बहुत बड़ा सा हवाई अड्डा है और जहां पर ऐरोप्लेन लोग खड़े है।

ऐसा लग रहा है जैसे लग रहा है कि ये एक डांस क्लास हैं।

और बोहोत बड़ा खुला जगह है और बोहोत अच्छा लग रहा है।

मैं देख पा रही हूँ सुंदर सुबह का समय है और सामने एक बड़ा-सा स्कूल है जिसका नाम है वेदांत ग्लोबल स्कूल ।

मैं यहाँ देख पा रही हूँ सुबह का समय है और धूप उठ गया है और ये एक सुंदर-सा बड़ा-सा बोहोत बड़ा-सा किला लग रहा है।

किले को देखने के लिए बोहोत टुरिस्ट आए हुए हैं। बोहोत लोग खड़े हैं। यहाँ पे सामने एक जन खड़े है और किला की ओर देख रहें है।

और बहुत जन बैठे हुए हैं। बहोत जन खड़े हुए हैं। कई-कोई लाइन लगाया हुआ है। बहोत अच्छा लग रहा --